यह भारतीय डाक है जो जो बहुत ही ग्रामीणों के लिए सुविधा जनक है ए.टी.एम ।

ए चार्ट पेपर है। इसपे ड्राइंग होगा और बहोत ही सुन्दर दिख रहा है एलो कलर में --

जो बैरियर लगा हुआ है वो कितना ही सुंदर दिख रहा हैं।

जो कि क्रिस्चियन धर्म में आता है चर्च । यहाँ पे बहोत सारा जो है लोग है जो कि अपना मनोकामना है जो मन में इच्छा रहती है उस चीज को लेके प्रेरणा करती है। ये क्रिस्चियन धर्म में का है। चर्च है। चर्च में आया हुआ है।

वे बता रहे हैं आपको के बना हुआ है। यहाँ पे --

आह इसमें जो हमारे हिन्दू धर्म के देवी देवता हैं ओह विराज हैं। बैठे हुए हैं और उनको खींच के रस्सी के द्वारा खिंच के उसको हरेक गलियों में लेके जाते हैं। ए श्रद्धालुओं --